एक दुकान का दृश्य है जहां पर दिखाई दे रहा है टीन शेड दिखाई दे रहा है कांच के शीशे लगे हुए हैं चार पाँच सिक्योरिटी दिखाई दे रहे हैं काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि हाथ में मोबाइल लिए हुए खड़े--

पे अपनी बॉडी को शो कर रहा है कुछ लिखा हुआ है पीछे मशीने रखी हुई है जिसमे डंबल्स दिखाई दे रहे है काले रंग के है सीट दिखाई दे रही है वह नीले रंग की है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जिसपे भूरे रंग का कार्पेट बिछा हुआ है।

गार्डन मै बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है एक बोर्ड लगा है जोकी सफेद रंग का है सड़क के दूसरे तरफ पर भी जाली लगी हुई है और हरी-हरी घास चारों तरफ फेली हुई है।

स्केटिंग की भी दु रखी हुई है साइकलिंग की दुकान साइकलिंग की मशीन रखी है नीचे दिखाई दे रहा है बॉटल्स रखी है बॉटल्स नीली हरी और बैंगनी रंग की है और ऊपर छत दिखाई दे रही है जहां पे लाइटें लगी है पीछे कुछ तस्वीरे लगी--

यहा पर खेत दिखाई दे रहा है। खेत मे मिड़ बंधी हुई है। जिसमे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे है। मिट्टी दिखाई दे रही है। पेड़ों की पौधे छोटे छोटे दूर तक फेलाये दे दे रहे है।

हरी हरी घाँस दिखाई दे रही है। पेड़ दिखाई दे रहे है। जिस पर एक आदमी एक औरत जा रही है। जिसने बीच मे जाती हुई दिखाई दे रही है। पीछे भी बहोत ज्यादा मात्रा मै पेड़ दिखाई दे रहा है।

पहाड़ दिखाई दे रहे है निचे मिट्टी बहुत दूर तक फैली हुई है इसमें घाँस उगी हुई है और छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

पीछे डंडे दिखाई रहे है जिसपे सफेद रंग का कपड़ा लगा हुआ है पीछे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है जो की चारों तरफ फेले हुए नीचे मिट्टी भी चारों तरफ फेली हुई है पेड़ के पौधे भी बहुत ज्यादा मात्रा मे है आगे पीछे तक दिखाई--

यहाँ एक कैबिन दिखाई दे रहा है कैबिन मे पर्स दिखाई दे रहा है डंबल्स रखे हुए है सीटा लगी हुई है ऊपर फर्श- छत दिखाई दे रही है जहाँ पर लाईटे जली हुई लग रही है पीछे कई सारे लोग खड़े है जो कि लाल रंग के टी-शर्ट पहने खड़े है।

नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जिसपे इटे बिछी हुई है एक अ-केबिन दिखाई दे रहा है जिसमे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने नीले की शर्ट और पैंट पहन रखी है वह बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है अंदर एक दिखाई दे रही है जहाँ कुछ लड़कियाँ खडी है।

एक रॉक रखी है जो की ब्राउन रंग की है। उसके बराबर मे एक आदमी खड़ा हुआ है। जिस पे बॉक्स रखे हुए है। नीचे का फर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाइटे जल रही है।

पोस्टर लगे हुए है तस्वीरे लगी हुई है कैबिन दिखाई दे रहे है काच के शीशे उसकी खिड़कियां दिखाई दे रहे कुर्सी दिखाई दे रही जो की काले रंग की है।

नीचे का फर्स दिखाई दे रहा है जिस पर केबिन बना हुआ है कैबिन पर भूरे रंग का फ्लाई लगी हुई है अंदर त-टेबल दिखाई दे रही है कुर्सी दिखाई दे रही है बार की तरफ एक दो चैर पड़ी है जोकी व्हीलचेयर है।

ऊपर लाइटें लगि है लाइटें जल रही है छत दिखाई दे रही है छतों पर लाइटें चारो और फैली हुई है नीचे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग की शर्ट पैंट पहन रखी है।